यहां पहाड़ भी बहोत अच्छे और बड़े हैं।

यहाँ बहोत सारे फेविकोल भी हैं यहाँ बहोत सारे टेपे भी उपलब्ध है।

वहां एक गोला है जो चार गोले दिखाई दे रहे हैं।

ट्रक में पेट्रोल भरा जा रहा है और पीछे कुछ लोग भी खड़े--

लड़के की शर्ट का रंग लाल है।

यहाँ एक दुकान की ओपनिंग है।

यहां सीमेंट दवाइयां उपलब्ध है।

लोड हो रहा है जो पैक हो चुका है।

जहां लाइटे लगी हुई है जहां लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं।

मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है।

पीछे जीजस की मूर्ति है यहां एक औरत स्पीकर पर कुछ बोल रही है।

नीले रंग का है शाम का नजारा है बाहर पेड़ लगे हुए हैं।